इस मे जहाँ पर एकआदमी हम्म अपनी बॉडी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा हैंयहाँ पर उसके हाथ में एक फोन हैजो अपनी सेल्फ़ी ले रहा हैं।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

का फर्श काफी सुंदर लग रहा है। इस के सामने के शीशे पे बो बहुत सारे बलून लगे हुए दिखाई दे रहे है। छत मे बहुत सारे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे है जो काफी सुंदर लग रहे है।

पार्क में कफ से एक लाईट का खंबा दिखाई दे रहा है जो काफी सुंदर लग रहा है दोनो साइड पेड़ लगे हुए है जिनकी कटिंग हुई है ।

ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ सूखे हुए पत्ते दिखाई दे रहे है ग्राउंड की दीवार पर कुछ तस्वीरें बनी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक बहुत बड़ी कॉलोनी है जिसके दोनो साईड बड़े ग्राउंड बने हुए है जहा पे बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है वहाँ पे कुछ बाइक्स खड़ी हुई है।

ये एक घर के बैकसाइड की जगह है जहां पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई है बिल्डिंग के नीचे काफी सारी दुकानें दिखाई दे रही है यहां पर बड़ा सा पाइप दिखाई दे रहा है।